उसमें दो तीन प्रकार की पेंट हुई है। उनमें से एक काले कलर का है एक सफेद कलर का है। घर के सामने एक ओर घर है जो काफी ऊंचा है।

जो कि काफी गहरी है नीचे कुछ गए हैं जो कि ऊपर के ओर आ चुके हैं। वह हरे-भरे हैं।

कुछ मिट्टी दिख रही है जो कि भूरे रंग की है।

एक मैदान है जिसमें सूखे-सूखे घास दिख रहे हैं। किनारों पर कुछ पेड़ पौधे लगे हैं जो कि एक गमले में लगे हुए है।

एक हॉल है जिसके नीचे टाइल्स लगी हुई हैं जो कि सफेद कलर की टाइल्स हैं। बीच-बीच में भूरे कलर की टाइल्स लगी हुई --

उनके बीच में कुछ घास लगी हुई है जो कि हरे कलर की है। उनमें एक पेड़ लगा है जो कि हरा भरा है।

एक स्टेज है जिसमे दो खुरसिया लगी हुई। दोनों खुरसिया डिजाइन वाली है और दोनों सफेद रंग की है। पीछे एक पर्दा लगा है जोकि सफेद रंग का है।

बहोत सारे पेड़-पौधे हैं जोकि हरे रंग के हैं कुछ पीले रंग के दिख रहे हैं इनमें धूप चमक रही है।